यह जगहा प्राकृतिक है जहाँ की बहुत ही हरे-भरे पेड़-पौधे है और यहा का वातावरण बहुत ही शुद्ध है आप यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग वाक़ कर सकते है।

यहाँ पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस है जहाँ पर टेलीग्राम और पोस्ट भिजवाया जाता है आप जहाँ चाहे वहाँ यहाँ से अपना टेलीग्राम भिजवा सकते है |

यहाँ पे बहुत से लोग नीचे में छोटी-छोटी मछलियाँ बेच रहे हैं और बाकी सारे लोग उसे खरीद रहे हैं छोटी और बड़ी दोनों तरह की मछलियाँ यहाँ पे बेचीं जा रही है।